आसपास के क्षेत्रों का इखट्टा हुआ पानी को रोकने में मदद करता है। जिससे हमारे गांव में पानी की पूर्ति होती है। बाँध के द्वारा बिजली भी बनायी जाती है।